यहां पे बहुत ढेर सारी छोटी छोटी गाड़ियां भी रखी हुई है।

मेज के ऊपर कुछ दवाइयां भी रखी हुई हैं।

यहाँ पर एक आगे स्टील का शटर लगा हुआ है।

यह मछली पन्नी में लिए हुए हैं यहाँ पे एक तराजू दिखाई दे रहा है।

यहां पे बोहोत ही सारे ऑटो ट्रक कार दिखाई दे रही है।

यह एक घर दिखाई दे रहा है इस घर के सामने दो तीन बाइक रखी हुई है और दो साइकल रखा हुआ है।